यह ब्रिज भी बहोत बड़ा ब्रिज है।

यह आदमी शायद एक सैलून में बैठा हुआ है।

इस पिक्चर में एक छोटा सा पहाड़ और बहोत सारे पेड़ और घर भी हैं।

मुझे इस पिक्चर में कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस पिक्चर में एक जिम दिखाई दे रहा है।

और इस जिम में बहुत सारी एक्सरसाइज की मशीन भी रखी हुई है।

उन सभी पौधो और गमलों का लाल कलर है।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

मुझे एक पिक्चर में एक आदमी दिखाई दे रहा है।

और यह शायद एक ज्वैलरी की शॉप है।

मुझे इस पिक्चर में ग्राउंड दिखाई दे रहा है।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

इस दुकान में बोहोत सारे कांच से बने हुए फ्रेम पड़े हुए हैं।

इस दुकान की दीवाल में ए_सी भी लगी हुई है।

इस फाउंटेन के साइड में एक लड़की भी खड़ी हुई है।

इस हाल में कुछ लोग भी खड़े हुए हैं।

और इस पिक्चर में कुछ लोग भीं दिखाई दे रहें हैं।

यह सभी पौधों के पत्ते हरे कलर के हैं।

वह तेबल ट्रक के सामान से बना हुवा हैं।